और अह काफी डब्बे है काफी डिब्बे है जो कि पर्पल कलर के हैं और काफी सारे बर्तन रखे हुए है जिनमे चटनीस डाली हुई है आलू डाले हुई है।